हरे पेड़- पौधे भी है और सूखे पेड़ -पौधे भी नजर आ रहे है ।

इसमें तरह तरह के उम्म नमकीन बिस्किट के पाउच लटके हुए है और साइड में कोका - कोला के --

गाड़ी खड़ी हुई है और उसमे एक व्यक्ति खड़ा है दो दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वहाँ पे--